इस इमेज में यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर डेकोरेशन हुआ या कर रहा है।

इस इमेज में यहाँ पर सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक भारतमाता का झंडा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक राधा कृष्ण का मंदिर दिखाई दे रहा है और यहां पर देखिएगा दीवार पर दो के निशान बने नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है यहां पर देखिएगा कुछ दो बाइक भी खड़ी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर नीचे ढेर सारी मूली नजर आ रही है और जिनके बड़े बड़े गुच्छे बंने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर एक रोड भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर बर्फ का गोला लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक दो लड़की खड़ी देख रही हैं और आसपास कुछ पेड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक दीवार दुकान नजर आ रही है अंदर की ओर काफी सारी लाइटें जलती दिखाई दे रही है।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

इस इमेज में देखिएगा का सामने यहां पर एक पुल के नीचे कुछ लोग पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं और बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज देखिएगा सामने यहां पर एक बंधन बैंक नजर आ रहा है बाहर देखिएगा स्कूटर पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर बड़ा सा बोर्ड है जिसपर आरी तारी लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मारुति सुजुकी शोरूम दिखाई दे रहा है बाहर एक ऑरेंज कलर की कार खड़ी नजर आ रही है।